यहां दो कुर्सी रखी हुई हैं | बीच में एक टेबल है| बगल में एक दराज़ है जिसमे बोहुत से टॉवल रखे हुए हैं ।

इधर हमें एक बार्बर शॉप दिखाई दे रही है जिधर बोरबर अपने कस्टमर की दाढ़ी बना रहा है।

हमें यहां हेक नवनिर्मित घर दिखाई दे रहा है जो की अभी फिलहाल कुछ दिन पेले ही बन कर तईयार हुआ होगा। अभी इसकी साफ़-सफाई नहीं की गई है।

यहां एक घर का द्रश्य है जिसका निर्मान चल रहा है।

ये एक सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकन्डेरी स्कूल का दृश्य है| इस स्कूल के सामने कुछ दो बसें रखी हुई है और एक बाइक खड़ी है।

ऐसा कुछ इस सीन के म्-म्-कोडिंग यहां लगा --

यहां हमें कुछ वर्कर्स एक मकान की दीवार पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँं एक सुंदर सा दृशय है जिसमें बहोत सी मूर्तियां बनी हुई हैं इंसानों की और जानवरों की।

यहा एक पुल का द्रश्य है जिसके आस पास सीमेंट के कट्टे पड़े हुए है साथ मे बहुत से पत्थर भी है जोकि पुल बनाने के काम मे आएंगे।

उसके पीछे एक एंबुलेंस खड़ी हुई --

जिसके अंदर ग्रोसरी का सामान है इसके गेट के पास एक इंसान लाल शर्ट पहन के खड़ा हुआ है।

गाड़ियां एक दो तीन चार पाँच गाड़ियां खड़ी हुई हैं वास्तव में और बहोत सी खिड़कियां लगी हुई है इस भवन में।